मार्केट टाइप का दिख रहा है जिसमे टोटल फूल ही फूल है तरह तरह के व्हाइट ऑरेंज पिंक व्हाइट येल्लो--

ये एक मंदिर टाईप का लग रहा है इसमें बहोत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं कुछ दिए जलाए है और एक साधु है एक नही है मतलब पंडित है ।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं बहोत सारे और इसमें लाल कलर से पुता हुआ ऊपर इसका टावर टाइप का --

ये एक बैंक का बोर्ड लगा हुआ है साइकिल खड़ी है दो बाहर एक रेड कलर का अंदर कपड़ा पहिन के कोई लड़का खड़ा है शर्ट पहिन के।

इसमें स्कूल का गेट दिख रहा है और क्या कहते काले कलर गेट है उसके ऊपर सिल्वर कलर से मतलब--

गाड़ी दिख रही है साइड जाते हुए सामने एक गाड़ी जाते हुए दिख रही है बच्चा दिख रहा है खड़ा हुआ और आइसक्रीम जैसे दुकाने दिख रही है खुली हुई दुकान का शेड दिख रहा है छते दिख रही है डंडे दिख रहा है।

कोई दुकानें दिख रही हैं बोर्ड लगे हुए दुकानों के बाहर कोई दुकानें बंद हैं बाइक दिख रही है इस पे कुछ लोग गाड़ी पर जाते हुए दिख रहे है ठेला दिख रहा है और क्या कहते है पेड़ पेड़ दिख रहे है बहुत सारे और सीढ़ी भी दिख रही है इसमें।